यहाँ पे ग्राउंड में बोहोत बड़ा जो ग्राउंड है यहाँ पे किसी खेल का मैच चल रहा है।

नदी गुजरा हुआ है जो देखने काफी अच्छा दिख रहा है पेड़ पौधे है तो बहुत ही सुंदर है।